ये एक घर है जोकि अभी नया नया बन रहा है।

यह एक टाइल्स की दुकान है।

और वहां पे बहोत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।

ये दीपावली के शुभ अवसर पे--

और इसके बगल में दो चौकी के ऊपर एक टेबल रखा गया है।

और एक पेड़ के नीचे बैठ कर--

जहां पे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लग दिख रहा है।

अं बाइबल की किताब लेकर खड़े हुए हैं।

ट्रक का स्पीकर वगैरह यह सब मिल जा--

में कुछ घर भी दिखाई पड़ रहे हैं।

और आ नाव चला एक ही नाव पे दो व्यक्ति सवार हैं।